यहाँ पे एक झूल बना हुआ है और गार्डन है पूरा पार्क बना हुआ झूले मे बहुत से एक एक पीला लगा हुआ जिसके रंग बेगनी और ऊपर से--

यहाँ पे घास दिख रही है और जिसका कलर हरा है सामने बड़े बड़े पेड़ दिख रहे है जिनका कलर काला है और खेत है बड़ा सा।

यहाँ पे एक बड़ी सी फोटो लगी हुई है और जिसका कलर सफेद है और काला है यहाँ पे बहुत सारी लकड़ियों का झाड़ लगा हुआ उसका रंग काला है।

--जहां पे एक बैंक हैं और बैंक का पोस्टर लगा हुआ है जिसका रंग सफेद है और नीला है और पोस्टर के बगल से एक स्टूल रखा हुआ है लकड़ी का जिसका रंग पीला है।

--और यहाँ पर एक सैलून की दुकान है जिसमें चार चा चार लोग आदमी है दुकान के अन्दर जिनमे कपड़ो का कलर नीला है सफेद है काला है लाल है।

--और ऊपर मलाये लगाई गई है जिनका रंग हरा है और टेबल रखी हुई है जिसका रंग काला है और बहुत सारी चीजें रखी--